बीच में एक लकड़ी की नाव है।

झूले का कलर रेड और नीला है।

साइड में कुछ वृक्ष है जिन पर पत्ते नहीं है।

ये बहोत सुंदर जगह है ये नेचुरल नेचुरल जगह है और इतना हरियाई है।

यहां सामने एक पोस्टर है उस पोस्टर में अंबेडकर जी का फोटो लगा हुआ है।

साइडों में दो खिड़कियां हैं और एक झूला भी है बच्चों के लिए।

ये नई पीले कलर की दुकाने ऑरेंज कलर हो रखा है शटर पे ये एक ए_टी_एम है और यह बंद है।

यह एक अद्भुत मकान है जीसका कलर पीला है।

सामने एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड पे कुछ चीज़ लिखी हुई है।

इसमें तीस बच्चे हैं और एक आदमी है।

यह लकड़ी का घर है इसमें कुछ टेबल है इसमें कुछ पहन जैसा गेट है।

को डेकोरेट किया गया है यहां एक आदमी कुछ कर रहा है जो सफेद कपड़े पहना है।

इसके अंदर घास बहोत बड़ी है ये गेट छोटा है।

यह एक कैंटीन लग रही है यह एक बार की तरह है यहां पर लोग शायद चाय पी रहे हैं।

ये बहुत ऊंचाई पर है बादल इसके पास लग रहे हैं।

ये सब चारों तरफ से पेड़ों से ढका घिरा हुआ है।

कुछ लकड़ियां भी पड़ी हुई है।

ये जेपी मैकेनिकल वर्कशॉप है और लेफ्ट में जीपी महिंद्रा वर्कशॉप है।

का बाउंड्री अच्छा हो रखा है इसकी रास्ता पतली है यह मिट्टी का पार्क है जिसमें एक पेड़ है।

सामने चार कुर्सियां है जो कि हरे कलर की है पी पीले कलर का कुछ सामान मिल रहा है।

शायद ये दिवाली सेलिब्रेशन है ये कुछ लोग सफेद कलर की ड्रेस पहने हुए हैं।